कुछ यहां पे एक्टिवा खड़ी हैं बाइके भी खड़ी हुई हैं।

फिर क्या और दिन का समय है पौधे दिखाई दे रहे हैं।

अह हरे रंग की है एक लाल रंग की है।

काफी सारी चेयर्स हैं जो कि पिंक और वाइट कलर की हैं टेबल है।

प्लेट में चावल पड़े हैं बोहोत सारे ठीक है और बोहोत टेस्टी लगरा है मु में पानी आ गया।

पीछे कांच के गिलास रखे हुए है।

और क्यू_आर कोड लगे हुएं हैं बाहर एक लड़की और दो लड़के बैठे हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं दिन का समय हैं।

इस फोटो में आस पास पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

अह प पो पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं और दिन का समय है।

इस फोटो में एक दुकान है एक लड़का बैठा हुआ है पीछे काफी सारा समान रखा है।

काफी सारी एक्टिवा और बाईकें खड़ी है दिन का समय है।

दिन का समय है खाना रखा है यहां पर।

और यहां पे काफी सारा लकड़ी का सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ने काले रंग की शर्ट पहनी है एक ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी है।

और पीछे जो है स्कूल की बस खड़ी हुई है काफी।

दो लड़के हैं स्टेज पर एक लड़का नीचे है और यहां पर काफी मतलब रात का ये समय है।

अब इस फोटो में सामने लिखा है चावला फैशन ।

यहां पर एक पानी की बोतल है और लाइटें लगी हुई हैं कैमरा भी लगा है एक शटर दिखाई दे रहा है।